तेज सूरज चमचमाता हुआ दिख रहा है।

इस चित्र में हमें जियानी रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

बड़ी बड़ी लकड़ी की बेंच नजर आ रही हैं।

यहां पर एक कच्ची सड़क नजर आ रही है आस पास काफी सारे पेड़ दिख रहे है।

जिसका नाम नैना पैलेस होटल है यहां पर एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसका रंग सफेद है।

इस तस्वीर में हमें बड़े-बड़े लोहे के क्रेन नजर आ रहे हैं आसमान में कई सारे बादल दिखाई दे रहे हैं।

केले के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं आसमान में काली घटा छाई है।

इस तस्वीर में हमें बड़ा तालाब नजर आ रहा है जहां पर कई सारी बदक और चिड़ियाए दिख रही हैं।

जमीन पर कुछ तस्वीरें बनी हैं एक आदमी साइकिल चला रहा हैं।

इस चित्र में हमें कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।